यहाँ पे नीच की और एक रास्ता है | उस रास्ते के बाजु में एक ईट की दीवार भी है |

इस खत में बहुत सारी फसल उगी हुई है | आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ सफेद आसमान भी है।

रोड के ऊपर बोहोत सारे लोग भी जा रहे है।

यह एक ईटो से बनी गयी एक गुफा है इस गुफा के बाहर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

यहाँ एक बहुत पुरानी जगह है| नीचे के तरफ बहोत सारी मिट्टी है और सामने एक मिट्टी की चट्टान भी दिख रही है।

यहाँ पे एक रास्ता है इस रास्ते के आजू बाजू में बहुत सारे--